एक ऑफिस का इमेज है जहाँ पे एमप्लॉईज काम करते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत सारे पेपर्स हैं।

और घर को सजाने के लिए भी मिल जाएगा खाने बनाने के लिए भी मिल जाएगा और बाथरूम --

आसपास पूरा जंगल है यह पर एक आदमी खड़ा है जहां से पूरा व्यू बोहोत अच्छा लग रहा है देखने में।

ये एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है मेक माय ट्रिप करके प्ले स्टोर पे अवेलेबल है जहां से हम ऑनलाइन भी टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हैं।